ये एक स्टेशन की तस्वीर है जिसपे एक स्टेशन का पोस्टर लगा हुआ है | ये एक स्टेशन की तस्वीर है |

पिले और गुलाबी कलर के फूलो से सजी हुई है ये एक मोटर --

जीन्स ब्लू कलर का पेहनी हुई है एक लड़की लाल कलर का टॉप --

दिखाई दे रही है पारक में एक छोटी-सी गुम्बद जैसा घर बनाया हुआ है जो की उजला और लाल कलर का है।

इस तस्वीर में बहुत सारे मछलियॉँ दिखाई रही है।

इस तस्वीर में बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर बिल्डिंग का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और --

एक बड़ी-सी ऊट दिखाई दे रही है ऊट को एक आदमी पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक बैंक की तस्वीर है जहाँ की बैंक का पोस्टर लगा हुआ है | बैंक के ऊपर बैंक --

का बैनर लगा हुआ है | एक बड़ी सी गेट लगी हुई है | ब्लू कलर की गेट लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी नदी है | नदी में बहुत सारे गाछ उगे हुए हैं |

इ ढेर सारे डब्बे वगेरा रखे हुए हैं।